और इस दुकान पर दो अ कास्टमर खड़े हुए हैं।

यहाँ पे इटे और काफी सारी मिट्टी दिखाई दे रही है।

यह फोटो एक जिम का दिखाई पड़ रहा है।

सीढ़ियों के पास एक हरे कलर का डस्टबिन लगा हुआ है।

और एक वजन नापने की मशीन भी रखी हुई है।